यहाँ पर एक शॉप दिख रही है जो रेफ्रिज़रेटर की शॉप है बहोत सारे --

इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है।

रोड के पास में कुछ--

ये नदी का पोरशन ही है और आस-पास में बोहत से पेड़ लगे हुए है।

बहुत सी घास उगी हुई है|

और उन पेड़ों के बिच में से सूर्योदय होता हुआ दिखा रहा है सूर्य दिखा रहा है।

अ डिज़ाइन में बहुत ही सुन्दर आकृति देखकर खम्भ और कुछ मंदिर के डिजाइन्स --

अ ढेर मिट्टी का दिख रहा है और उसपे एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है।

अँधेरा दिख रहा सूर्य की रौशनी कही भी --

और लाइटिंग भी बहुत ही अच्छी--

सामने की तरफ कुछ काउंटर दिख रहा है नीले कलर का --

जिसके आक ऊपर बहुत सी प्रतिमाये बनी हुई है और इसके शिखर पर--

यहाँ पर बहुत सारी चेयर रखी हुई है।